इस चित्र में हम स्टील के बाउल के अंदर बहुत सारी मछलियां देख रहे हैं मछलियां हल्की काई कलर की दिख रही ।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं एक हरे कलर का वस्त्र दिख रहा है ऊपर सफेद आसमान दिख रहा ।

इस चित्र में हम एक बाजार को देख रहे हैं बाजार के चारों तरफ दुकानें लगी हुई ।

बहुत सारे आदमी दुकानों से सामान ले रहे ।

अंदर कुछ सीढ़ियां भी बनी हुई है बोर्ड के बगल में एक टू व्हीलर गाड़ी भी खड़ी हुई है।

एक व्यक्ति के द्वारा काउंटर में टोपी लगाए हुए खड़ा हुआ है वह काउंटर में कुछ कर रहा है।

अब ठंडे से बचने के कपड़े हैं एक आदमी हाथ ऊपर करके बैठा।

गुफा के बाहर तीन लड़के दिख रहे हैं लड़का सफेद कलर की शर्ट पेहना हुआ है।

और किनारे-किनारे कुछ गुंबज भी दिख रहे हैं।

में हम तीन-चार प्रकार का भवन देख रहे हैं तीन चार प्रकार के भवन की आकृति ढलान में बनी हुई।

बिल्डिंग के ऊपर गोल गोल की आकृति के तार भी दिख रहे हैं जो लुभा रहे हैं।

इस चित्र में हम एक आदर्श क्रेडिट की ऑफिस देख रहे हैं इस ऑफिस में दो कंप्यूटर दिख रहे हैं।

नीचे एक सील का निशान दिख रहा है किनारे एक बाल्टी दिख रही है।

चारों साइड हरी हरी घासें पेड़ पौधे दिख रहे है।

ऊपर से कुछ लंबी-लंबी तारें भी गई हुई हैं।

इस चित्र में हम एक भवन के बाहर रोड देख रहे हैं भवन सफेद कलर का दिख रहा ।

इस चित्र में हम एक बहुत बड़े भवन के बाहर की रोड देख रहे हैं।

इस चित्र में हम एक स्कूल का चित्र देख रहे है।

भवन में भी इटों की जुड़ाई की गई है ऊपर से प्लास्टर नहीं हुआ।

कुछ पीले भी दिख रहे हैं कुछ कच्चे दिख रहे हैं कुछ पक्के दिख रहे हैं।